इस बोर्ड के आस-पास बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है।

यहाँ बोहत सारी चट्टाने भी दिखाई दे रही है और उस चट्टानो पर बड़े-बड़े पत्थर लगे हुए है ।

होटल का नाम गेट वे ऑफ कर्नाटका है जो कर्नाटका में हैं।

जहाँ पर पांच छे आदमी बैठे हुए है।

कॉलेज के आस-पास बहुत सारे पेड़ पौधे तथा आसमान दिखाई दे रहा है।